ए एक चाय के ब्रांड हे हैंडमेड ग्रीन टी ये चाय जो की शुद्ध चाय मानल जाथे ए चाय ला पिये बर कोई बीमारी नई होय ए ब्रांडेड चाय हे ए चाय ला पीना चाइये हमन ला--

यहाँ से मिल है मिल थे यहाँ सब लेहे बर कांटेक्ट कर सकत है।

इ शासकीय नवीन महाविधयालय बलरामपुर का स्कूल है जो की इतना सूंदर बना जैसे दो छत कर आय और सीढ़ी है बिच में मैदान है बगल में अअअ महुआ का पौधा है कितना सूंदर लगत है साफ सुथरा एक दम स्वच्छ--

ऐ महादेव के शिव शंकर भगवान के शिव लिंग है जो की ऐमे विराजमान रथे ऐमन ला दूध चढ़ाय ला जाथे अउ ऐ प्रसन्न हो जाय ना में पूजा करे बर सब पुजारी आथे।

ए डॉक्टर भीम बार राव अंबेडकर के है मतलब मूर्ति है एकर बाद एक -एक जगह स्थित करल गइसे एकर पीछे में सैमसंग लिखाई से पूड़ा --

ए बहुत पुराना जमाना कर मंदिर लगत हे बहुत पुराना बरसो पुराना हमर दादा बाबा पर दादा मन ए मंदिर ला देखन होही--

कोई भी आदमी रुक सकथे ईहाँ--

ए दुकान है शॉपिंग मॉल शॉपिंग मॉल में देखत है कपड़ा है कोन - कोन से डिज़ाइन क्वालिटी --

ये भी एक मॉल है जेकर नाम है शिवम् गारमेंट्स मेन रोड प्रतापपुर एकर मोबाइल नंबर है चौरानवे चौबीस पच्चीस ब्यासी चौसट--

इडली सेंटर है एकर दुकान है एकर खोलत होइ एक ठॆ रोज शिवम एकर नाम है एकर कार है प इतना काम के कार खरीदारी से इतना सुंदर आदमी बन गिस इतना बढ़िया ये आदमी--

ये एक जंगल के किनारे धने मंदिर बनिस हे जोनमे भगवान विराजमान है ऐमें सब पूजा करे बर आथय कितना सूंदर चारो तरफ हरियाली अउ हरियाली के बिच में एक मंदिर बनाल गइस हे बहुत बड़ा के शोभाग्य की बात हे।